हिमांशु फ़ास्ट फ़ूड का दुकान है और काउंटर बहुत बड़िया सजाया गया है | सभी समान काउंटर पे रखे हुए हैं |

और यहाँ एक पोस्टर हैं पोस्टर में सभी लोगो का फोटो भी लगा हुआ हैं और ये घर के अन्दर हैं और फर्श हैं घर में।